फ्लावर्स और बलून है लगता है नई स्टार्ट हुई है व्हाइट और ब्लू कलर के बलूनस लगे हुए हैगेंदे की मालाएं लगी----

ये एक स्कूल है व्हाइट एण्ड पिंक कलर में इसका पेंट किया हुआ है।

गार्डन है सामने आ चार शेर है चारो साइड उनके मुंह है उसके ऊपर एक परी का स्टेचू लगा हुआ है।

यहाँ पर एक अ छोटे-छोटे मटके की शॉप लग रही है और वहाँ सामने एक अ टीन का टपरा डला हुआ है वहाँ पे पान की दुकान है गुटखे वगैरा टंगे हुए हैं।

यहां पे झूले वगैरा भी मिल रहे है एंड सामने एक सीमेंटेड रोड बना हुआ है।